यहाँ एक राजकीय उद्धयोगिक प्रेक्षण संस्था है जो ग्राम भोपाल-न् के कासखंड मोरना जनपद ब्-मुजफ्फरनगर में स्थित है।

यह एक आइस मेल एण्ड फूडी ज़ोन है| यहां पर बहोत सारे प्रकार की आइसक्रीम मिलती है। जो ओ दिख स्वादिष्ट होती है।

जैसे पीला दीवार है। यहां पर बोहत सारे पत्थर हैं मठीले रंग के और यहाँ पर काले काली कलर और यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़िये हैं।